इस कोलोनी के बाहर में एक बड़ी सी कार भी खड़ी की गई है।

इस फेक्ट्री में सभी प्रकार की सुविधाए भी उपलब्ध है ।

यह कोई बत्तक है यह बत्तक बहोत ही खूबसूरत--

घुमने के लिए भी आते है इस नदी का पानी कभी भी नही सुखता है यह नदी हमेशा भरी ही रहती है।

यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं और यह दिखने में बहुत ही खुबसुरत दिख रहा है यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग घुमने के लिए आते रहते है।

यहाँ पे छोटे बच्चो को खेलने के लिए बहुत प्रकार की वस्तुए दी जाती हैयहाँ पे सभी कोई वस्तुए लेने के लिए आते रहते है ।

और यहाँ पे कुछ चोंकीदार भी है जोकि स्कूल की रखवाली कर रहै हैं।

यहाँ पर बहुत सारे बच्चे प्रेक्टिकल का तैयारी कर रहै है यहाँ पे टीचर इसे सिखा भी रहै है।

यह एक कॉलोनी है यह कॉलोनी बहुत ही बड़ी है यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते है।